और यहां पर दो क्रेट रखी हुई है क्रेट में कुछ मछलियां भी रखी है।

और यहां एक लोहे का तार भी पड़ा हुआ है।

ऑटो में एक आदमी भी है।

यह एक बच्चों की लाइब्री खुली हुई है। यहां पर कुछ लाइट भी लग रही हैं।

यह एक छड़ी है यहां पर कुछ आदमी कुछ महिला खड़ी हुई है।

और एक झंडा भी लगा हुआ है कुछ पेड़ भी है।

इस समुद्र के ऊपरली साइड कुछ पहाड़ भी चमक रहे हैं।

एक आदमी हाथ में मशीन ले रहा है और एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

और यहां पर कुछ गमले भी रखे हुए--

बाहर की साइड कुछ मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी खड़ी है।